यह एक इंडेन गैस एजेंसी है जिसका दो मंजिल बिल्डिंग है।

इसमें सामने ए_टी_एम और--

यह एक विवाह भवन है।

दो बाइक खड़ी है एक औरत भी खड़ी है घर के आगे।

दो एक्सरसाइज मशीन दिखाई दे रहा है यहां--

लिख रहा है टेबल पे कुछ दवाइयां रखी हुई है कुछ बोतल --

और क्रिम कलर से किया हुआ है।